कैमरे वाले फोटो एच रहे हैं कुछ रिश्तेदार खड़े हैं पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं।

साइकिल के दुकान में एक व्यक्ति साईकल के ऊपर बैठा साइकिल चलानेय रहा है और माक्स लगाए हुए है।